नीचे में कुछ बैटरी भी रखा हुआ है और एक चाक नीचे भी है।

काफी सारे कार नजर आ रहे हैं ऊपर में ग्रील लगा हुआ है।

इसके ऊपर में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं उधर मुंह मुंह करके।

कुछ पाइप का पाइप से घेरा हुआ है।

यह एक नदी जैसा है इसमें दो तीन बोट भी लगा हुआ है और काफी सारे पानी के अंदर में कचरा भी नजर आ रहे हैं।

यह एक बुक का दुकान है इसमें काफी सारी बुक नजर आ रहे हैं वह काफी सारे कलम भी नजर आ रहे हैं।

यह एक फुटबॉल ग्राउंड है एक बच्चा फुटबॉल को अपना पैर से मारता हुआ नजर आ रहा है।

जैसे कि पैंपर्स भी नजर आ रहे हैं।

यह एक चाय का कप है इसमें चाय रखा हुआ है कप का कलर लाल में है।

और एक पटरी भी नजर आ रहे हैं ऊपर में सीढ़ी भी नजर आ रहे हैं।

काफी सारे काउंटर में भी कपड़ा रखा हुआ है।

काफी सारे शीशे लगा हुआ है काफी सारे तार भी नजर आ रहे है काफी सारे भी नजर आ रहे है।

बिल्डिंग में भी नजर आ रहे हैं जैसे कि ऐ_सी भी नजर आ रहे हैं तार की नजर आ रहे हैं।

काफी सारे बाइक स्टार्ट किया हुआ है कुछ दुकानें भी नजर आ रहे हैं।

काफी सारे चटाई भी बिछाया हुआ है।

भी नजर आ रहा है उसका कुछ का कलर लाल में है दो वाइट कलर का बालशीट है।

नीचे में काफी सारे व्यक्ति देख रहे हैं ऊपर में पुजारी नजर आ रहे हैं उसने रेड कलर का गमछी रेड कलर का धोती पहना हुआ है।

एक हैंडबैग नजर आ रहे हैं और कुछ खुद भी नजर आ रहे हैं कुछ कुर्सी भी नजर आ रहे हैं।

कुछ टाइल्स भी नजर आ रहे हैं और घर का पेंट किया हुआ है ब्लू कलर का और गेट भी नजर आ रहे है

मछ की साइड में काफी सारे पत्ते गिरे हुए हैं।

साईं भगवान भी नजर आ रहे हैं दीवार में और काफी सारे बाइक भी नजर आ रहे हैं।

काफी सारे हरे पत्ते भी नजर आ रहे हैं और काफी सारे हेलमेट भी नजर आ रहे हैं।

वीवो कंपनी का फोन का दुकान भी नजर आ रहा है।

इतने सारे ए_सी खिड़की भी नजर आ रहे हैं और जंजीर से कुछ घिरा हुआ नजर--

और नीचे में तिरपाल बिछाया हुआ है।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

पीला डब्बा के ऊपर में कुछ लाल कलर कर रखा हुआ है।

हरे भरे घास नजर आ रहे हैं नीचे में भी टाइल्स लगा हुआ है।

गमला में काफी सारे पेड़ पर लगाया हुआ है और काफी सारे टेबुल कुर्सी भी नजर आ रहे हैं।

यह एक मस्जिद है इसमें काफी सारे मुसलमान को दफनाया हुआ है।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

ये सारे महजिद का ये बनाया हुआ नजर आ रहे आ रहे है काफी सारे फूल का भी नजर आ रहे हैं।

यह एक मंदिर जैसा दिख रहा है इसमें काफी सारे व्हाइट कलर किया हुआ है।

एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और कुछ टांगना में टांगे हुए हैं कपड़ा।

टाइल्स भी लगी हुई है और काफी सारे भी नजर आ रहे है और काफी सारे कजरी भी पड़ा हुआ है।

यहां एक घर जैसा दिख रहा है इसके बाहर में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं।

व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पेंट पहना हुआ है और दो कार भी नजर आ रहे हैं।

के बगल मे कुछ बास से घेरावट किया गया है।

बाहर में कुछ लोग पड़ाका फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में कुछ गेट भी लगा हुआ है और एक व्यक्ति फोन चलाते हुए भी नजर आ रहे हैं काफी सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा--

मुसलमान टी_वी देखते हुए नजर आ रहे हैं।